घरो में लाइट जलती हुईं दिख रही है।

आसमान सफ़ेद कलर का दि --

सामने की ओर दुकानें दिखाई दे रही हैं।

एक अ झोपड़ी बनी हुई दिखाई दे रही है खंभे लगे हु --

पीछे एक दादाजी दिखाई दे रहे है।

पीछे बहुत सारे पौधे दिखाई दे रहे हैं।